यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े है कुर्सी भी डली है लेस क्लैट भी बहुत सी दीपा बच्चे खेल रहे है बहुत ही अच्छा पहाड़ है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रही है बहुत ही सुंदर हैं।